बाहरी बाहरी जगह से भाई बन्धु सब आए हुए हैं।

ये पहाड़ है। एक लड़का खड़ा हुआ है। टी-शर्ट पहना हुआ है। क --

और ऑफिस है नीचे है |

बहुत अच्छा से शोभा लगाए हुए हैं देख रहें हैं।

नाव लेके जा रहा है उस झील में।